सामने जो चेयर है दो इंसान बैठा है।

और पत्थर लंबी है झिल्ली लंबी नीचे पे पेड़ लंबी है बाजू हरे भरे हैं इसको देख ऐसे लग रहा है कि एक पूल है ओवर बिरी ब्रिज ।

यहां पे डिब्बे लोंग भी है यहां पे--

और इसको देखके कैसा लग रहा हैं? कि एक शाम के टाईम का हैं।

इसको देखके कैसा लग रहा है कि एक मेडिकल है यहां पे बहोत सारी दिवाल --

यह एक बस स्टेशन है यहाँ पे बहुत सारे लोक लोग भी है यहाँ पे एक बोर्ड भी लगाया है यहाँ पे टॉवर खंभा भी है यहाँ पे --

बाजू तरफ न हरे-भरे पेड़ लोग भी है और घर लोग भी है।

ऐसा लग रहा है कि एक योगा क्लास है बहुत सारे चटाई लोग हैं बहुत सारे--

इंसान लोग भी हैं और बाइक भी है।

इसको देख के ऐसे लग रहा है की--

दो ठो पलंग हैं बहोत सारी बेडशीट लोग भी है और--

पर भी हैं और भी है।

और देख के एक ऐसा लग रहा है कि--

अच्छा लग रहा है कि नाप--

गाय लोग ऐसे लग रहा है कि चारा खा रहे है बोहोत सारे--

इसको देख के एक ऐसा लग रहा है कि--

हाथ धोने के लिए एक नल लगा भी हुआ है।

और नीला कलर का ना बैठने वाला भी है बुक भी है।

इसको देखके ऐसा लग रहा है कि ये बहोत बड़ा मॉल है।

बहुत सुंदर सी है अ टेबल लो बहुत सारे हैं।